एक मेज पर रखी हुई है मेज गोल्डन कलर की है पीछे की तरफ एक गेट लगा हुआ है और यहाँ पर आस पास और भी फर्नीचर --

जहा पे सफ़ेद कलर फुल एक बिल्डिंग है।

जो सामने की तरफ ब्लैक कलर के कांच से डेकोरेट की गयी है उसके सामने बोहोत से लोग खड़े हुए है।

सामने एक बोहोत ही सुन्दर सा गेट बना हुआ है इसका सामने एक--

गार्डनिंग की गई है कुछ झाड़ियां है और पीछे भी कुछ डिजाइंस बने है।

उधर से एक लड़की सामने की तरफ आ रही है जिसने वाइट टी-शर्ट और ब्लू पेहनी है पीछे की तरफ कुछ लोग बेठे है और कुछ लोग खड़े हुए भी है।

यहाँ एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है इसके सामने एल लेडिज है जिन्होंने चस्मा लगाया है पीछे की तरफ एक घ--

घर के आस पास बोहोत से सामन रखा हुआ है सामने एक बड़ा पेड़ है उसके निचे एक एक ग्रीन शेड बना हुआ है सामने की तरफ कुछ बाइक भी खड़ी हुई है।

पूरा वाइट कलर का है पीछे की तरफ तीन गेट लगे हुए है।

ये वही है वहां पर एक टेडी बेयर रखा है एक तकिया है कुछ बैग और कुछ चेयर सामान रखा है।

जहा पर एक टीचर एक बाइक के ऊपर कुछ पड़ा रहे है और कुछ स्टूडेंट्स सामने की तरफ बेठे हुए है।

कोई गर्ल्स और बॉयज दोनों है जो सारे रेड चेयर पर बेठे है और कुछ ब्लैक चेयर भी है और रेड के साइड में एक ग्रीन बोर्ड भी लगा हुआ है।

और ग्राउंड पूरा खाली है ग्राउंड में जो एक प्लेयर है उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी--

यहाँ दिख रहा नि है बिग्गा चाय फार्म रोड और नदाये नंबर लिखे हुए है दो और ये है रोका--

रूम है यह पर बोहोत सा सामान टंगा हुआ है आ गेरेज का--

यहाँ पिंक कलर और चोकलेटी कलर से कलरफुल एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है और जो--

यहाँ पर एक चाय शॉप है और चाय शॉप में एक व्यक्ति है जो चाय दे रहे है उनके आस पास बोहोत सारे डिस्पोजल अलग अलग--

टंकी रखी है एक कंटेनर रख अहि स्टील का और भी बोहोत सारे बर्तन रखे है पीछे की तरफ स्टेज है और एक--

यहाँ पर एक होटल है जहा पर में जो चेयर लगे है बोहोत से खाली है और एक चेयर पे ब्लैक कलर का बैग और एक--

ब्राउन कलर का बैग रखा है और दो कुछ लोग चेयर पर बेठे हुए है पीछे की तरफ ऑरेंज कलर के कर्टन लगे है।

यहाँ पर बोहोत से लोग अनदर की तरफ बेठे हुए है भी बोहोत से गोलाकार--

ये राउंड फिगर में भी सामने की तरफ गेट के आस पास पेड़ लगे हुए है।

दो बने हुए है एक पिलर है जो दो पिलर है और सामने की तरफ--

ऑटो भी खड़े हुए है पीछे की तरफ बोहोत से पेड़ भी है कुछ मकान भी है।

बेठे है और उन्हें ऑरेंज सफेद और ग्रीन कलर के बैलून से डेकोरेट किया गया--

और कुछ गोलाकार आक्रति में ऊपर दो तीन छुमर भी भी टंगे है और कुछ व्यक्ति खड़े है जो को डेकोरेशन को सही कर रहे है।

कुछ गमले भी लगे हुए है और इनके पीछे की तरफ एक बिल्डिंग घर--

टूटी पिंक और रेड कलर की बाउंड्री है सामने की तरफ कुछ सामन रखा है एक बाइक खड़ी है कुछ लोग आस पास जा रहे है खड़े है।

जहा पर बोहोत से फ्रूट और सब्जिया रखी है तरबूज और पाइनेपल एप्पल --

क्लीनिं और दूसरा सामान निचे की तरफ भी बैग भर के रखा है एक पिंक कलर की टोकरी रखी है।

बोहोत से अलग अलग बैनर लगे हुए है प्रोडक्ट्स को लेकर और सामने की तरफ बोहोत से लेडिज और जेंट्स डेरी में सामान--

यहाँ पर एक सरकारी ऑफिस बना हुआ है क्युकी यहाँ जो बोर्ड और बैनर लगे हुए है।

यह लग रहा है की कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और उसके बहार बोहोत से बाइक और स्कूटी खड़ी हुई है।

एक कांच की अलमीरा है जिसमे ऊपर से निचे तक अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे है कुछ पे--

कल की तरह वाटर टैंक भी है सामने की तरफ कुछ छोटी ओ बड़ी पैर लगे है।

ओर वाइट कलर की हलकी छोटी बाउंड्री वाल है पीछे की तरफ और साइड में कुछ और बिल्डिंग भी है कुछ और पेड़ भी लगे हुए है।

इसके बिच में एक चोकोर आक्रति में एक डिजाईन बना हुआ है जो बोहोत ही सुन्दर लग रहा है।

और जो बिल्डिंग है वो वाइट क्रीम और ग्रीन कलर से पेंट की हुई है और साइड में कुछ बाइक और कुछ ऑटो भी खड़े हुए है।

पानी है इसमें ब्लू कलर का ड्रेस पहना है और जो बुक्स है उन्हे बोहोत ही सुन्दर तरीके से डेकोर क्या गया है।

बाउंड्री वाल है बिच में एक बड़ा टावर लगा हुआ है और कुछ डिजाईन बना हुआ है बिल्डिंग के बिच में--

बहोत से जगह खाली हैं और पेड राइट साइड दोनो तरफ लगे हुए--

यह पर एक ऑटो खड़ा है जिसपे कुछ लोग बेठे हुए है सामने की तरफ एक व्यक्ति ऑटो पर पैर रख के खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी --

यहाँ पर एक सेलून है जिसमे बोहोत से लोग खड़े है बोहोत सा समन भी रखा है एक व्यक्ति चेयर पर बेठा है।

और एक व्यक्ति उनकी शर्ट में पहना रहे है साइड में भी भोत से चेयर पानी का कंटेनर --

लगी हुई है कुछ बड़े पेड़ भी दिख रहे है और साइड की तरफ कुछ सामान भी दिख रहा है सामने--

ये यहाँ पर बोहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो स्कूल है और यहाँ पर उसके सामने की तरफ एक छोटा घर भी बना है।

बोहोत ही सुन्दर पिंक कलर से इसे डेकोरेट किया है और इस्पे सब्जेक्ट --

यह पर दो बाइक खड़ी है और फिर एक इसके अन्दर बोहोत ही बड़ी--

यह पर बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो ब्लैक कलर के कांच इसके विंडो में लगे हुए है।

और एक ब्लैक कलर की दो कार खड़ी है और पीछे की तरफ कुछ लोग भी ह--

सफेद कलर का जुमर लगा है और निचे सामने एक चटाई बिछी हुई है।

अ- रेड कलर का एक बोर्ड लगा है और उनका बोहोत से सामान और कुछ बोटल्स रखी हुई है।

सामान पड़ा हुआ है जो उस कार को रिपेयर करने के लिये है।

यहाँ पर रोड से एक ब्लैक कलर की कार जा रही है और सामने एक रेड कलर की बाइक खड़ी है।

कुछ पीले और नीले कलर का एक बोह्गोत बड़ा बेनर लगा हुआ है और सामने की तरफ से चोराए का रास्ता गया हुआ है।